चूड़ी निकलेश उसके पीछे एक सा --

जिसमे सेल पचास परसेंट ऑफ़ लिखा हुआ हे.

ट्रक है उसके पीछे उस बीचमे एक आदमी है जो की झुका हुआ है.

फूल है साइड में दो ब्रिज हैं.

इसके पीछे बैग बहुत सारे बैग है।

इस घर मे दो बुजुर्ग आदमी बैठ बोहोत सारे आदमी है.

और इसमें बहोत सारे लोग भी है.

जीनका नाम देव हॉस्पिटल है।

और वह डांस सीख रहे हैं.